यह एक गाइड मैप है। इस मैप में सभी जगह के बारे में दिया हुआ है और इस मैप से लोग बहुत सारी जानकारिया निकालते है । और यहाँ एक जंगल है। इस जंगल में यह मैप बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक कॉलेज है। इस कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सारी कुर्सिया रखी गई है। इस कॉलेज में बहुत सारी क्लासेज और रूम बने हुए हैं।

यह एक सड़क है इस सड़क पर एक रिक्शा खड़ी है और इस सड़क के बगल में बहुत सारी दुकाने लगे हुए हैं यह सारी दुकाने अभी बंद है यह दुकानों के उपर घर बने हुए है यहाँ बहुत सारे लोग भी रहते हैं ।